यह एक थ्रीडी समान है जिसमें मुझे सामने एक चश्मा दिखाई दे रहा है।

यह एक बहोत ही बड़ा रास्ता है जिस रास्ते के पास में मुझे दो कार दिखाई दे रही है।

पेज इसके पाद में है जिसके अंदर उसमें भी सामान रखा हुआ है इसमें डोंगा भी रखा दिखा हुआ है।

नीचे टाइल्स लगी हुई दिख रही है और कुछ व्हाइट कलर के परदे भी दिखे रहे हैं।

यह एक ज्वेलरी शॉप है इस शॉप में मुझे बहुत सारे हार दिखाई दे रहे हैं जोकि शीशे के एक उसमें धरे हुए हैं।

बहोत सी लाइटे जल रही हैं और इसमें मुझे कुछ वाइट कलर की डिजाइनिंग भी दिख रही है।

कुछ व्हाइट कलर के कट्टे भी रखे हुए हैं और कुछ शॉप बंद पड़ी हुई है।

कुछ व्हाइट कलर के बल्ले के जिनके ऊपर पीले कलर का गुड़ रखा हुआ है।

कुछ अलग रंग के पर्दे भी लग रहे हैं पिले हरे नीले लाल--

यह एक कमरा है जिस कमरे मुझे एक बेड दिखाई दे रहा है और दो तकिये भी दिखाई दे रहे है।